अभी समय लगेगा लेकिन बनने ज्यादा वक्त नहीं लगेगा और ऐसा लगता है कि ये बोहत अच्छा बन रहा है।

और देखा जाए तो अच्छा लग रहा है दिन का समय है और यह सुंदर दिख रहा है।

जोकि अभी पुरे तरीके से तैयार नहीं हुई है। दिन निकल रहा है और काम चल रहा है। देखने पर पता चलता है कि अभी बनने मे समय लगेगा और बन जायगा जरुर।

मे गाड़ियाँ गंदी खडी हुई हैं जो धुलने आई हैं और ये एक टिन शेड के अंदर खडी हैं।

इस चित्र में यह एक की सी तस्वीर नजर आ रही है जो देखने पर बहुत सुंदर दिखती है।